एक पूरा सजा हुआ गार्डन है पूरा--

चप्पल जूता ये सब का दुकान है पूरा अलग अलग कलर का चप्पल सभी देखने दे रहे हैं जूता सभी देखने दे रहे हैं।

और इलेक्ट्रिक पोर्शन भी दिखाई दे रहा और बिजली कनेक्शन सब भी दिखाई दे रहा--

बिल्डिंग सब भी दिखाई दे रहे और बिल्डिंग का कलर सफेद है।

और जर्सी सब भी देख अलग अलग टाइप का वो सब प्लास्टिक के अंदर में पैक करके है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है जिसमें पर्दा लगा के है।

छोटा सा गा गार्डन भी दिखाई दे रहा है।

और बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहे और स्ट्रीट लाइट्स भी दिखाई दे रहे--

और बैलून का कलर रेड और वाइट मिक्स करके लगा के है अंदर में इंसान लोग भी है।

एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा और सिसो भी दिखाई दे रहा--

लजी बिस्किट भी दिखाई देरा है सेव किट गम दिखाई देरा है।